ये एक घास का बहुत बड़ा मैदान है जिसमें कुछ गाय चारा खातें हुए दिखाई दे रही है।

यह एक रूम है जिसमें जिम का समान रखा हुआ है।

ये एक कंप्युटर ट्रेनिंग अकैडमी है जिसके अंदर एक गेट भी लगा हुआ है एण्ड इसके अंदर एक कुर्सी भी लगी हुई है ।

इसमें बहुत सारी लड़कियां भी बैठी हुई है जो योगासन का बर्फी कर रही है एण्ड इसमें बहुत सारी जो लड़की है उन्होंने ड्रेस पहन रखा है वाइट कलर का--

इसमें जो लड़कियां है उसमें से एक लड़की ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है एंड इसमें से एक लड़की ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

ये एक जिम है जिसमें बहुत सारा जिम का सामान रखा हुआ है एंड इसमें एक दीवाल भी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है एंड कांच के ऊपर एक बोझ भी लगी हुई हैं।

ये एक मिठाई की शॉप है जिसमें विभीन्न प्रकार की मिठाई रखी हुई दिखाई दे रही है एंड इसके पास में एक तराजू भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

ये एक पार्क है जिसमें बहुत सारे कछुयें दिखाई दे रहे हैं एंड पार्क में एक जगह पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है एंड पार्क में जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है उसके पास में पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एंड लकड़ी के ऊपर एक मोर भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एंड इसमें एक पे केले का पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये देखने में बहुत ही है अच्छा लग रहा है मोर।

ये एक जंगल है जिसमें पांच लोग जाते हुए दिख दे रहे हैं जंगल में बहुत सारे पेड़ - पोधे भी दिखाई दे रहे हैं ।

एंड इसके पास ही एक केले का पेड़ भी लगा दिखाई दे रहा है एंड इसमें एक आदमी भी है खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो मिट्ठू को देख रहा है।